दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है मटकियाँ दिख रही हैं।

है पेड़-पौधे दिख रहे हैं। आसमान दिख रहा है।

इसमें गुलदस्ता दिख रहे हैं घंटा --